यह एक केक की तस्वीर है जो एक व्हाइट कपड़े के ऊपर रखा है केक का कलर व्हाइट और रेड है जिसमें दिल बने हुए हैं।

यह एक चर्च की तस्वीर है। जहां ईसा मसीह एक वो तस्वीर दिखाई दे रही है और नीचे एक कैंडल जल रहा--

और तीन चार व्यक्ति पेड़ो के पास बैठे हुए है और नीला-नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

यह एक फुल स्मार्ट टायर सेंटर है जहाँ पर बड़े-बड़े ट्रको के टायर रखे हुए हैं।

बोरी ही है जो ऑरेंज कलर की है। यह एक व्यक्ति है जिसने हर नीले कलर की टी शर्ट पहना हुआ है| केरेट में काफी सारे आलू रखे हुए हैं।

या एक शादी पार्टी का डेकोरेशन है जो पिंक एंड व्हाइट एंड ग्रीन कलर के फ्लावर से सजाया गया है।

इस तस्वीर में काफी सारे ये पन्नी में पैक हुए प्रोडक्टस दिखाई दे रहे हैं जो लाल कलर के हैं नीले कलर के हैं येलो कलर के हैं ।